यह एक दुकान जिसमे बहुत सारे सामान कही रखी हुई है। दुकान के बीच एक स्टूल रखा हुआ है।

बगल में एक बिजली का खंबा है और साइड में घास का मैदान है सामने में कुछ पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं।